ये किसी सलोन का पीक लग रहा है जिसको बहुत ही बड़िया करके बनाया गया है।

ये देखिए सामने रोड है और साइकिल भी खड़े हुई है और साइकिल पे कुछ लोग भी है।

ये किसी समुन्दर या अअअअ कोई तालाब का पिक है काफी अच्छा लग रहा है।

बिसलेरी की बॉटल्स भी रखी है और एक मिल्टन का जग भी है और टाइल्स लगे हुए हैं मैचिंग का है सब।

जिसको अंधा कानून आप बोल सकते हो जिसके हाथ में एक तराजू है जो की अ किसी अ व्हाइट कलर का दिख रहा है और पीछे ऐ_सी का डब्बा भी रखा--